वो अपने बस की वेट कर रहा है।

और उसके पास थोड़ा टाइम है तो वो वो और हेयर कटिंग के साथ साथ में एक अपनी एक सेल्फी भी ले रही है।